एक मार्केट दिखाई दे रहा है।

मार्केट में बहुत सारी इमारतें दिखाई दे रही हैं।

कमरे में एक पंखा लगा हुआ है।

एक इमारत दिख रही है।

एक इमारत दिखाई दे रही है।

इमारत के बाहर एक खाली मैदान भी --

इस तस्वीर में एक हरे रंग का डिब्बा भी दिखाई दे रहा है।

इमारत के आगे एक सरक भी दिखाई दे रही है।

एक नदी भी है।

हमें इस तस्वीर में एक पार्क दिखाई दे रहा है।

कमरे में दो कुर्सी भी रखी हुई है।

हमें इस तस्वीर में एक--

ट्रक दिखाई दे रहा है।

बच्चे ने हरे रंग की टी_शर्ट पहनी है।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

पेड़ के नीचे बहुत सारे गमले लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।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

लाइट लगी हुई है।

जिनमें से एक सब्जी का रंग हरा है।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

यह कमरा एक जिम का कमरा है।

मंदिर में एक व्यक्ति पूजा कर रहा है।

इमारत दिखाई दे रही है।

हमें इस तस्वीर में एक कमरे की गेट दिखाई दे रही है।

इमारत के बाहर बहुत सारे पेर भी दिखाई दे रहे हैं।

पेड़ों का रंग हरा है।

पैरों की खांसों का रंग भी हरा है।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

यह गाड़ी मारुती सुजुकी की है।

इमारत के बाहर भूरे रंग का मकान भी है।

यह एक रेस्टोरेंट की इमारत है।

इमारत पर द चॉकलेट रेस्टोरेंट लिखा हुआ है।

इमारत के अंदर एक लाइट भी लगी हुई है।

हमें इस तस्वीर मेंएक इमारत दिखाई दे रही है।

बस में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं।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

पेंट लगा हुआ है।

कमरे में दो लोग बैठे हुए।

हमें इस तस्वीर में एक कमरा देखने को मिल रहा है।

इस कमरे में एक आदमी हरे रंग का शर्ट पहने हुए --

इस कमरे में बहुत बड़ा शीशा लगा हुआ है।

कमरे की छत पर एक--

हमें इस तस्वीर में एक गार्डन दिखाई दे रहा है।

एक गुड़िया दिखाई दे रही है।

समंदर में एक नाव भी चलता हुआ दिखाई दे रहा है।